हिपस मार रहे हैं पैरों के उम्म उम्म जॉगिंग कर रहे है ग्रीन ग्रास है।

तरीके तरीके की किताबे हैं अलमारी बनी हुई है उनमे सजा रखे किताबे का नाम बाहेर की तरफ कर रखा है किताबों का।

ये एक जिम है। यहां पर बंदे जिम कर रहे हैं। एक अंकल यहां पे दिख रहा है और पोस्टर लगा रखा है।

यहां पे कुर्सी रखी है ग्लास का टेबल है।

मर्ची में मिर्ची में चु रहा है और जमीन में फैला रखी है एक पन्नी में भी मिर्ची भरी पड़ी है और काम हो रहा है।

ग्वालियर मंदिर लिखा हुआ है और काम हो रहा है बड़ा सा गेट है उसके बीच में छोटा गेट बना रखा है।

पिलर पकड़ रखा है काम हो रहा है यहां पे ग्लास लगा हुआ है और पकड़े हुए है और ये जा रहे है।

अपना टैलेंट दिखा रहा है बंदा जो उल्टो के बिच में कितनी सारी टाइल्स तोड़ दी उसने--

और सामने व्हाइट घर बना हुआ है मंदिर जैसी चौकट बना रखी है पेड़ लगे हुए हैं तरीके के सा पूरे घर को कवर कर रखा है।

दरवाजे के फ्रेम का यहां पे हार्डवेयर की दुकान है हैं।

छठ पूजा के लिए खड़ी हुई हैं सुबह के टाइम पे छठ पूजा मना रही हैं फेस्टिवल है इंडिया का ये--